और बगल में एक पाइप लगा हुआ हैलाइट वगैरह बना हुआ--

और बिल्ड इसका दीवार बहुत ही अच्छा लुक डिज़ाइन अच्छा लग रहा है।

ये भारतिया एंटरप्राइज लिखा हुआ है कुछ क्लासेस वगैरह होता है बीटीएस ये सब का--

और इसके बगल में द चिकि चिकन का एक कोई शॉप है दुकान है।

और उसके बगल में भी काउंटर पे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर यहाँ पे ए- टी- एम्स का है।

और इसके बगल में बहुत सारे तार गए हुए हैं इसके बगल में भी ब्राउन कलर का बिल्डिंग है।

यहां यहां पे एक चर्च बना हुआ हैग्रीन कलर का और इसमें कुछ लोग घूमने गए हैंइसके वॉल थोड़ा।

जो प्रभु के बारे में यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं और एक है जो प्यानो बजा रहा है।